और बहोत सारे झरने जैसे की पानी बह रहे हैं।

और पंडालस वगैरह लगे हुए है आदमी और ये लोग भी है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी सजावट वगैरह भी हुआ है।

औ वो घर वगैरा भी है।

और यहाॅं कुछ हैं और बहोत से--

जो की बहोत सारे सामान नजर आ रहें हैं।

पता नहीं क्या हो रहा है।

और ये बहोत ही बहोत ही बड़ा मैदान है और--

और यह मशीन वगैरह दिख रहे हैं।

यहां तीन आदमी हैं और--

बहोत बड़ा है और पानी भी बहोत --

जोकि बहोत अच्छे लग रहे है।

जो की वहाॅं सारे पोस्टर लगा हुआ हैं और बहोत से--

बहोत सारे पेपर वगैरा भी है।